प है जो कि बहुत ही अच्छा सा खिला हुआ है। यह एक पुष्प है जो कि बहुत ही अच्छा से खिला हुआ है। चारों और पेड़-पोधे हैं एवं गर बगल --

यह एक जंगल है और कल बड़े-बड़े पहाड़ एवं पहाड़ के नीचे न नदी का बहाव है।

यह एक कार है जो कि बाजार में लॉन्च की गई है और यह कार बहुत ही नई है एवं इस नय नया है और यह. --